और योगा कर रहे हैं और इनमें बहुत सारी लेडीज हैं और आगे एक लेडीज बैठी है जिसमें जिसने चश्मा लगा के रखा हुआ है और ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और --

रेस्टोरेंट को दिखाया गया है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर कुछ लोगों को दिखाया हुआ है।

तरह तरह की बोट लगी हुई है।

और वो यहां पर मरी हुई है और एक जगह के ऊपर रखी हुई है।

यहां पर एक लेनटर को दिखाया गया है जो--

और इस पे ब्लैक कलर का इस पे पेंट किया गया है।

और झरने के आसपास बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं।

घास के ऊपर और यहां की घास बहुत हरी भरी है।

यहां पर कुछ आदमियों को दिखाया गया है जो टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं।

और यहां पे बहोत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ब्लू कलर की यूनिफार्म पहनी है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट को दिखाया गया है जो काफी एक्सपेंसिव है।

यहां पर एक जिम को दिखाया गया है और एक--

और यहां मुझे बहोत घना जंगल है जहां पर--

और यहां पर एक ट्रॉली को दिखाया गया है जिसपे रिलायंस का लोगो लगा हुआ है और जिसपे --

जो सरिया बांधने का काम कर रहे हैं और लकड़ी डालने का काम कर रहे हैं जिसके ऊपर--

बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं और इस पे --

और एक और आदमी को दिखाया गया है जो ऑटो को रोक रहा है।

और आदमी रोड पे चल रहा है।

यहां पर एक प्लेग्राउंड को दिखाया गया है जहां पर--

ट्रेन किया जा रहा है फुटबॉल खेलने के लिए।

और जो है यहां पर ग्राउंड बहोत ही बड़ा है।

और ग्राउंड के सामने एक बहुत ही।

और यहां पर बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल है।

यहां पर एक जिम को दिखाया गया है।

कि आदमी इस गुफा के अंदर को देख रहा है।

जो शीशे में अपनी सेल्फी को ले रहा है।

यहां पर एक स्वीट्स की शॉप को दिखाया गया है।

यहां पर एक क्लास रूम को दिखाया गया है।

होमवर्क दिया गया हैएक बच्चे ने अपनी कमीज शर्ट --

रक्षाबंधन के लिए बहोत सारी रखियो को लटका के रखा हुआ है बेचने के लिए और इनको काफी--

लाल कलर की कमीज लेकर खड़ा हुआ है।

यहां पर एक रोम को दिखाया गया है।

और काफी सारे लोग पीछे सुन रहे हैं और काफी सारे छोटे-छोटे बच्चे बच्चियां।

अलग अलग वैरायटी का अचार बहोत सारी वैरायटी का अचार रखा गया है और यहां पर इन्होंने --

दो तीन छोटे छोटे घर है और यहां पर बहोत सारी--